मंदिर लग रहा हैं और बडा बड़े गेट लग रहे लगे हुए हैं और एक झाड़ भी लगा हुआ हैं पीछे एक बहुत बड़ा और आम के भी झाडं लगे हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल जैसा दिख रहा है यहाँ एक कैबिन है जिसके पास एक अंकल खड़े हुए है और दो भैया खड़े हुए है।